इसकी आउटलाइन ब्लैक कलर से दिखाई दे रही ।

डंडे दिखाई दे रहे हैं।

पहिये वाली गाड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक फिलिंग दिखाई दे रही है जिसमें --

इसकी अंदर की दीवारों पे पीला कलर पोता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसकी दीवारों पे स्लेटी व सफ़ेद कलर पोता हुआ दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारे सोलर पेनल लगे हुए दिखाई दे रही है।

बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं काले कलर --

पत्थर-कंकड़ दिखाई दे रहे हैं।

कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर --

सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

पे सफेद कलर की लाइट्स है एल.जी. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रही है गैस दिखाई दे रहें --

दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर का बैनर दिखाई दे रहा है जिस प --